एक ब्लैक कलर का डॉग है एक ब्राउन कलर का डॉग है एक येलोविश डॉग है।

मिल ला है और इंडियन बाथरूम सीट और इंग्लैंड बाथरूम सीट मिल ला है यहां पे अंकल के चेयर लगा हुआ है जो अंकल यहां पे समान बेचते हैं।

टॉय ट्रेन है कार है जे_सी_बी है।

जो की पानी लगता है बरसात के नाले के पानी है और यहां पर --

पेट्रोल पंप कच्चा है जो ऊपर में बोर्ड नहीं लगा है नीचे लगा है।

यहां पर बिरयानी का छोटा भी तसला रखा हुआ है कुर्सी लगा हुआ है।